घर के अंन्दर बहुत सारा लाइट है कैमरा जैसे दिख रहा है व्यू य --

पता नही कौन सा गाँव का झुला हैं रहता हैं बहुत सुंन्दर दिख रहा हैं।

ये कौनसा मंदिर हैं ये हम नही जानते पर इसके पेड़ पीपल का पेड़ हैं उसके एक साइड में मतलब--

पेड़ के पूरा गोल-गोल में एक क कपड़ा बांधे है।

भैया भैया पीछे बैग रखा हुआ है।

और कुछ नजारा तो दिख नहीं रहा है एक औरत बैठी हैं। .